यह एक पेट्रोल पंप दुकान है। यहाँ डीजल बिकती है। यहाँ गाड़ी की डीजल खत्म हो जाती है तो कस्टमर सब यहाँ डीजल डलवाने के लिए आते हैं। यहाँ दो पेट्रोल पंप है। इसके ऊपर एक छत दिया हुआ है।